बगल में बहुत सारी साइकिल खड़ी हुई है और एक बाईक खड़ा हुआ है सामने के साईड बहुत सारे लाईट लगाए गए हैं जो सफ़ेद रंग के लाईट जल रही है ऊपर के साईड में कंटेनर रखा हुआ है जो सफ़ेद रंग का है।

एक आदमी टाट बिछा कर मछली रखा हुआ है और एक हसिया रखा हुआ है जिससे मछली वह काट रहा है बगल में एक तराजू भी रखा गया है।

सामने एक लड़का स्टेज पे खड़ा है माइक पे कुछ बोल रहा है पीछे के साइड पे एक सफ़ेद पर्दा लगाया गया है उसके ऊपर गुब्बारे लगाए गए हैं।

दो आदमी खड़े हुए हैं एक कैमरा लगाया गया है और जो छत है सफ़ेद रंग की है सामने दो कुर्सी रखी हुई है जो लाल रंग की है। दो खिड़की लगाई गई है जिससे रौशनी आ रही है अगल-बगल एक खंभा लगाया गया है जो गोल्डन कलर की है।

बहुत लड़कियाँ है और ऊपर साइड में बहुत सारे गुब्बारें लगाए गए हैं जो रंग बिरंगे-गुबारें हैं और पर्दे लगाए गए है।